यह एक अनुमंडल कार्यालय है लक्खीसराय का और यहाँ पे बोहोत सारे लोग आते है।

और यहां पर बहुत अच्छी पोल्टेकनिक की पढ़ाई होती हैं यहां बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षक है और वो बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं।

यह एक जू है और यह जू बहुत ही बड़ा है इस जू में बहुत सारे --

एक रिक्शा है और यह रिक्शा --